उसके साइड में एक कार भी नजर आ रही है उसके सामने बहुत से पेड़ दिखाई--

एक लड़की साइकल से आ रही है और--

यह एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत से मशीने रखे हुई हैं और नीचे--

बहुत से पेड़ लगे हुए हैं और पीछे एक सफेद रंग का घर भी नज़र आ रहा है।

चित्र भी बना हुआ है और साइड में एक शटर भी नजर आ रहा है।

यह एक खेत का दृश्य नज़र आ रहा है और खेत के साथ कच्ची मिट्टी की --

में बहुत सी बिल्डिंग भी नजर आ रही हैं।

इस चित्र में बहुत से कुत्तों के--

जे_सी_बी नजर आ रही है।

दोनों दुकाने रोशनी से जगमगा रही हैं।

और नीचे एक सफेद रंग का लोहे का गेट --

यह एक क्लासरूम का दृश्य है।

यह एक दुकान है जिसमें पर्दे के सैंपल लगे हुए हैं।

बहुत बड़े बड़े घर भी बने हुए हैं इस चित्र में एक विशाल पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

जोकि अपनी छत पर खड़ा हुआ है और उसके आस पास बहुत से घर भी नजर आ र--